खेलने के समान भी हैं बहुत और पतला रास्ता हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड में--

मिट्टी देखने को मिल रही हैं।